जो कि आधे नदी में पानी--

दूल्हा और एक दुल्हन खड़ी है।

जोकि कमरे के अंदर दीवाल में--

फोटो में मुझे एक पहाड़ इलाके की--

इस फोटो में मुझे एक

चेयर है और बहुत बड़ा विंडो है विंडो में वाइट कलर की पर्दे लगी हुई है।

एक टेबल दिखाई दे रही है।

किसी चीज की मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है जो कि चारों तरफ लोग बैठे हुए है।

जो कि एक घर में दो विंडो है।

गेट के दोनों बगल बंद विंडो है और मकान के छत के ऊपर दो टंकी भी है।

और इस दुकान में बहुत बड़े बड़े टेडी बियर्स और गाड़ियां कार जीप रिमोट कार सारे कुछ है।